एक दीवार पर कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों के सामने टेबिल रखी हुई जिसमें कुछ बुक और रजिस्टर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ।